गाड़ी खड़ी जिसके अंदर सामान लाधा हुआ है पीछे एक बहुत ही बड़ा घर बना है| घर सफेद कलर का है और एक ईंटे की ईंटे का घर बना हुआ है।

स्कूल में बहुत सारी खिड़की बनी हुई है और ऊपर के टेरेस पे अभी तक कलर नहीं किया गया है| सिर्फ इंटें की दीवार खड़ी हुई नज़र--

यहाँ पे हमें एक दुकान दिख रहा है| दुकान के अंदर काफी लोगों की भीड़ है लोग बैठे हुए नजर आ रहे है कुर्सी रखी हुई है और सोफा लगा हुआ है| यहां पे बाहर स्टेचू पे तीन पुतले खड़े हुए।

यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विद्यालय है| विद्यालय का बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है गेट के ऊपर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए है जो आधे निकले हुए है आधे छुटे हुए है पोस्टर सफेद के नीले कलर का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और अंदर बहुत ही बड़ा विद्यालय है।

एक गेट लगा हुआ है| गेट का कलर नीला है और लाल कलर के बहुत बड़े पोस्टर लगे हुए दिख रहा है| बाजू में एक घर बना हुआ है जिससे गैलरी है।